अंस्टीच कपड़े रखे गए है इस शोरूम के --

इस मेन पार्लर में एक कुर्सी में एक आदमी --

थोड़ी ही दूसरी साइड में एक लड़का दुसरों का हे --

गेट के उपर एक बड़े से बोर्ड पे तहसील --

खूब ढ़ेर सारे मोसम्मी रखे गए हैं। ये हरे और पीले रंग में हैं। इसी के ऊपर --

और बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ भी वैसी ही भीड़ दिखाई दे रही हैं।

एक बड़ा सा मंदिर है जो बहुत ही सुंदर डिजाईन से बना --

दरवाजे लगे ओए हैं। एक तरफ लोहे का गेट लगा हुआ है। दूसरी तरफ वुडेन के --

दिए गये इमेज में हमें एक जिम का हॉल दिखाई दे रहा है। इसमें जिम की मशीनें दिखाई दे रही हैं।